ये एक हाइवे है जहाँ पर कई सारी गाडियां निकलती है फॉर व्हीलर टू व्हीलर इसी हाइवे के ऊपर एक पुल है जहाँ पर से हमको बड़ी गाड़ियां छोटी गाड़ियां नि निकलती हुई नज़र आती है इ--

यह एक बहुत बड़ी होटल है इस होटल का नाम होटल पंचशील प्राइम है इसके अंदर अलग-अलग तरह के लाइटनिंग की गई हुई है जैसे की पर्पल ब्लू रेड व्हाइट।

यह एक जिम है जिम के अंदर कई सारी मशीनें हैं।

जैसे कि इसके अंदर दो-तीन ट्रेड मिल है वाकिंग मशीन है साइकलिंग है कई तरह के डंबल है।

और इसी जिलो के पास कई सारे बहुत बड़े-बड़े पेड़ है जो हरे - भरे हैं।

ये एक बहोत बड़ा मंदिर है जो किसी जगह पर बिच-ओ-बिच बना हुआ है इसमे मंदिर का कलर व्हाइट है ।